एक सड़क है जिसके बगल में गेट लगा हुआ है जो की एक मकान का है जो कि गेट गुलाबी कलर का है उसके सामने दो गाड़ियां खड़ी है जो की काले कलर की है।

सामने एक बस है जो की ग्रे कलर का और लाल कलर का और सफेद कलर का है उसमें दो चक्के दिख रहे हैं इस पर और कुछ खिड़कियां हैं जिनमें कांच लगी हुई है उसके पीछे एक मकान है जो की बहुत बड़ा है।

एक रोड़ है रोड़ के बगल में गाड़ी और स्कूटी खड़ी हुई है स्कूटी सफ़ेद रंग की है उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई हैं उसके बगल में एक आदमी हैं जो की शर्ट और लोवर पहना हुए है।

एक हॉस्पिटल है जिसमें दो डॉक्टर है एक डॉक्टर मुंह में मास्क लगाया हुआ है और चश्मा पहना हुआ है।

सामने एक और पेड़ है जो की हरा-भरा है ऊपर से बहुत सारी तार गयी हुई है मकान के।

सामने एक रोड है रोड में एक टैक्सी खड़ी हुई है और बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है और कुछ लोग खड़े हुए है सामने एक घर है जो कि तीन मंजिला है तीनों मंजिलों में सीढ़ी लगी हुई है जिनमें नीले कलर का पेंट हुआ है।

उस बोर्ड में एयरटेल लिखा हुआ है बहार कुछ लोग खडे हुए है।

रस्ते में एक लड़की जा रही है जो कि बहुत आगे है और रस्ते के अगल-बगल पेड़ पोधे लगे हुए है जो कि हरे-भरे है।